इस इमेज में यहां पर एक कार्यालय दिखाई दे रहा है जहां कुर्सी पर दो बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक पार्क छोटा सा दिख रहा है।

और हरा घारे घास भी नजर आ रहा है।

और नीचे कुछ लोग भी नज़र आ रहे है।

जहां पर कांच का दरवाजा लगा है।

एक क्लास रूम दिखाई दे रहा है।

और लाइटें भी जलती नजर आ रही है।

नजर आ रहे हैं।